यहाँ पर बहुत बड़ा गाछ भी है उसके बाद सो प्लांट का भी बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है इसमें एक जेंट्स भी ठरा है।

पुलिस भी है एक ऑटो भी है कच्ची रास्ता है एक फोर व्हीलर भी लगा हुआ है उसके बाद फिर नीचे में--

उसके बाद यहाँ पे एक लेडीज लोग भी है जो चल रही है यहाँ पे पेड़ भी है।

कराटा हो रहा है कराटा सिखाया जा रहा है यहां पे एक जो है वो सिखा रहा है बाकी सब जो है कराटा कर रहे हैं।